में डॉक्टर भी दिखाई दे रहे हैं।

एक पेड़ में पिंक कलर की फूल लगे हुए हैं हरी-हरी घास दिखाई दे रही है।